जहॉ पर दो औरते साड़ी वाली दिखाई दे रही एक सलवार सुट वाली दिखाई दे रही --

जो बच्चो को हाथ पकड़ के ले जाते हुए दिखाई दे रही।

जहाँ पर वो काली पहाड़ी दिखाई दे रही है उसके पास हरे-भरे झाड़ --

ट्रिमर से बाल कटिंग करते दिखाई दे रहा उसके सामने सरस्वती माता की फोटो लगी हुई है।

और कुछ पानी के स्प्रे और कुछ एक थैली सी दिखाई दे रही है और वो उसको सर को पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा --

और स थोड़े उसके आगे उम काले कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है।

और लोहे का एक बोहोत बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और बादल से ढका दिखाई दे रहा है मौसम।

तीन-चार सीढ़ियां नजर आ रही है उसके अंदर से गेट दिखाई दे रहा है।

ये मुझे एक जंगल नजर आ रहा है जहाँ पर एक आदमी का हाथ अ फूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

ये एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है और एक छोटा से तालाब के अंदर एक झाड़ जो सूखा दिखाई दे रहा है।

ये कुछ अकैडमी है जो वहाँ पर कुछ बच्चे मुझे डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

शॉप दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट अ अ दिखाई दे रहे और फ्लॉवर दिखाई दे रहे --

और कुछ पेड़ के टहनी तालाब के ऊपर से दिखाई दे रही हैं और सामने एक पन्नी पड़ी दिखाई दे रही है।